यह एक मोबाइल दुकान है जिसका नाम कन्वि एंटरप्राइजेज है।

दिवाल पर एल_ई_डी लगी हुई है सामने मिक्सर और टोस्टर रखे हुए हैं।

यहां पर एक आदमी खड़ा है जिसमें चश्मा पहना है।